जिसमें एक बने हुए है सरस्वती जी बने हुए है और यहाँ पे बहुत सारे भक्त उनके बने हुए है जो बहुत ही अच्छे है और यहाँ इंडिया का फ्लैग लेकर खड़ा है जो ठीक है इंडिया का ही है ये तो गारंटी है पीछे --

देखने से लग रहा है कोई नीम सैलून नाम का दुकान है वो सैलून का ओनर है शायद वही पे यहां खड़ा है ये कोई फोटो खिंचवाने बहुत सारी भीड़ लगी हुई लाइन लगी हुई है वहां पे एक ढोल है और अंदर बहुत सारे कस्टमर हैं।

इस पिक्चर को देखने से लग रहा है कि ये कोई स्कूल है इस स्कूल में या लइका जो फ़ोन चुपके से ले कर चला गया वो फोटो खिंचवा रहा है और --

इस पिक्चर को देखने से लग रहा है कोई क्रिश्चियन है उन्ही के यहाँ ये महोत्सव है समारोह है इस समारोह में बहुत सारे दीप जल रहे हैं।